लाइनिंग वाली प्लेट के अंदर--

यह दृश्य एक अमूल-- --

यह है दृश्य पुराने समय की पुरानी सिलाओ से बने हुए घर का है।

यहाँ पर बुके और गुलदस्ते सजावट के लिए रखे हुए हैं।

जो कि बहुत ही बड़े एरिया में है इसको बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है।